आधी की ग्राउंड में सारी दी कांच लगी हुई हैं बहुत ही अच्छा सुंदर तस्वीर देखने को मिल रहा है उपर लाइटें लग रही हैं।

चित्र बहुत ही अच्छा खूबसूरत देखने को मिल रहा है चित्र में हमें बहुत ये कुत्ता दिखाई दे रहा है जिसका इलाज करते हुए दो डॉक्टर दिखाई दे रहा है बहुत ही प्यारा दृश्य देख --

सामने मुझे बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य दिखाया गया दृश्य बहुत ही प्यारा और अच्छा देखने को मेरा दृश्य में जो चित्र दिखाया गया बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखाया गया --

मुझे सामने एक बहोत ही अच्छा प्यारा सा दृश्य नजर आ रहा है दृश्य में जो चित्र दिखाया गया वो चित्र बहोत ही अच्छा प्यारा सा दिखाई दे रहा है बहोत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है।

एक बेग बड़ा दे यार इतना तो करा दे यार सपना ने बुला दे यार --